तिबार की सतरंगी दिखाई दे रही है वो।

नीचे बोहोत सारे पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं। एक लोहे का खंबा गढ़ा दिखाई दे रहा है और साइड में एक छोटी बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

भारतीय स्टेट बैंक का एक बोर्ड लगा हुआ भी दिखाई दे रहा है उसमें उह गेट दिखाई दे रहा है खिड़कियां दिखाई दे रही है और नीचे --

एक बस स्टॉप दिखाई दे रहा है। बस स्टॉप पे बसें खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। ऑटो रिक्शा भी खड़े हुए दिखाई दे रहे। कुछ लोग चलते --

ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई दे रहा है। खिड़कियां लगी हुई दिखाई दे रही हैं। ऊपर आसमान भी ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई दे रहा है। इस --

एक हॉल दिखाई दे रहा है। हॉल में स्टेज लगा हुआ दिखाई दे रहा है। स्टेज बहुत सारे फूलों से लाइटों से --